ये पेट्रोल पम्प है जिसका इंडियन ऑइल है और ये काफी बड़ी है ।

इंटरनेशनल एकेडमी है।

कॉलेज का ऐन्यूअल फंगक्शन चल रहा है | यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों जो सेम ड्रेस पहने हुई हैं |